तस्वीर में एक फूलों की दुकान दिख रही है।

यह संभवत एक दर्जी की दुकान या कपड़ों का स्टोर है।

एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं।

पीछे दूर तक घर सड़क और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

तालाब में ढेर सारे कमल के पौधे हैं।

नी साफ दिख रहा है और पत्ते पानी की सतह पर तैर रहे हैं।

दुकान की छत पर ट्यूबलाइट लगी है पूरा दुकान रंगीन और व्यवस्थित दिखाई दे रही है।

यह एक सैलून की तस्वीर है नीली कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा है उसका बाल कट रहे हैं।

यह एक ऑटो रिक्शा का तस्वीर है।